ये पीला जैसा मट्टी लग रहा है।

ये तो किसी का बर्थडे लग रहा है।

यहाँ लग रहा है कोई गायक झण्डा फहरा रहे हैं यहाँ बापू जवाहर नेहरू का फोटो लगा हुआ है सब बच्चे छब्बीस जनवरी या पंद्रह अगस्त मनाने आए होंगे कितना सुंदर लग रहा है सब का कपड़ा --

ये तो बाजार लग रहा है यहाँ बहुत सारा मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है बगल में दुकान है कोई जा रहा है कोई दाढ़ी-बाल बना रहे हैं उधर लगता है कोई सामान बिक रहा है होटल जैसा लग रहा है।

यै स्कूल है जहा मैडम पढ़ा रही है दो गो मैडम है |

बागान है खेलने वाला एगो गाड़ी है गेट लगा हुआ है ।

यहाँ दिल जैसा बना हुआ है फुकना लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है ।

क्या रखा हुआ है न समझ आ रहा है ।